यह एक जिम का रूम है।

उनका कलर काला है और बिल्डिंग का कलर क्रीम कलर यानी कि येलो है।

यहां पर बहोत सारे फल है।

बोरियां बिछाए हुए हैं और ये मस्क भी लगाए हैं ये तिरंगा कलर की पट्टी डारे है।

काली नीले पैंट शर्ट पहने हुए हैं सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं मंदिर बहोत ही अच्छा बना हुआ है।

और बहोत सारे हरे भरे पौधे खड़े है।

ये बहोत सी अलमारियों में रखी हुई है।

और एक लाल कलर का बैग रखा हुआ है पंखा रखा हुआ है।

यहाँ और यहां पर एक कलेंडर टंगा हुआ है और बहोत सी चीजें हैं यहां पे।